पीछे भी तीन जेंट्स बैठे हुए है सामने सीढ़ी लगी हुई है ब्लैक कलर का कारपेट डाला हुआ है सामने छोटे-छोटे ग्रीन कलर के घास दिख रही है एक लेडिस खड़ी हुई है साड़ी पे--

पीछे डार्क नीले कलर का पर्दा लगा हुआ है सामने लाइटिंग बोर्ड लगे हुए हैं।

ये एक बड़ी सी बील्डिंग है टू फ्लोर की और ऑरेंज कलर का व्हाइट कलर का इसमें पेंट किया गया है।

ये एक लड़का है लड़का हाथी के सूंढ़ पे बैठा हुआ है हाथी का स्टेचू बना है पीछे में बड़े-बड़े झाड़ है।